मिट्टियां बहुत सारी और यहां पे खुदाई भी बहुत सारी हो चुकी है।

प्लेट भी रखी हुई है गिलास भी रखी हुई है टेबल है चेयर है।

इधर सामने भगवान की फ़ोटो लगी हुई है वेलकम की पोस्टर लगी हुई है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है जोकि ब्लू कलर की चड्ढा पहने हुई है और--

खड़ा है ये सेल्फी लेने के लिए भी काफी अच्छा जगह है।

अच्छे अच्छे खिलौने नजर आ रहे हैं बच्चों के लिए इधर--

और व्हाइट कलर की पैंट पहने हुए हुई है।

जो जिसने कीपैड कलर की शर्ट पहनी हुई है और यह दुकान उन्हीं का है।

रंग बिरंगे कपे नजर आ रहे है सो की देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा--

कपो पर बहुत ही ज्यादा की गई है कप अधिकतर व्हाईट कलर की है और उनपे रंग -बिरंगो की डिजाइन की गई --

केबिन है ब्लू कलर की टी शर्ट और--

पलेंडर बोतल रखी हुई है जमीने ब्लैक कलर की नजर आ रही है।

येह एक झरना है ऊपर से पानी बहोत ही तेज रफ्तार में गिर रही है।

ये एक नहाने के लिए बोहोत ही अच्छा जगह है इधर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने की--

व्हाइट कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर का पैजामा पहनाए हुए--